ये पत्थर का लगता है घर बनाया गया होगा।

देखिये य्ये यह जो है कलर किया है और ऊपर देखिए बहुत ही अच्छा बादल देखने को मिलता है।

और वहाँ पे देखिए कितना घर देखने को मिलता है यहाँ और ये बीच में एक पेड़ लगा हुआ बड़ा बहुत बड़ा |

ये दाढ़ी लगाया गया है और ये शहर का --

पोस्टर बहुत ही अच्छा पोस्टर बहुत बड़ा पोस्ट लिखा है लगाया गया है उस अर्ध कि गटीना देख ने मिलता है इस अर्ध कि लड़का खड़ा है।

--और ग्रीन-ग्रीन देखिए कितने अच्छे अंदाज में खिड़कियां हैं यहाँ पर बहुत सारी खिड़कियां है इस तीन फ्लोर घर में--

की गेट वूट भी देखने को मिलता है उस साइड पोस्टर भी छपा है उधर देखिए घर भी बना है वहा देखिए कितना अच्छा व्हाइट और से बादल देखने को मिलता है।

पिक्चर देखिए दो आदमी है बाइक है बहुत ही अच्छे अंदाज में ये घर ही बनाया गया होगा।